--और सामने बहुत सारी काफी रजिस्टार और कुछ--

इस इमेज में चार पांच लोग खड़े हुए है और दो औरते भी खड़ी हुई है और एक आदमी एक बच्चे को लिए हुए--

इस इमेज में एक सटर दिख रही है और एक कांच का गेट भी दिख रहा है और सामने न नीले रंग में--

इस इमेज में एक बॉलीवाल का गराऊंड दिख रहा है और कुछ हरी घाँस भी दिख रही है।

और सामने लाल और उम्म नीले रंग की मैट भी बिछी हुई है ।

और उस पर राजकीय औद्यगिक --